वह इस सैलून पर कुछ आदमी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस ग्राउंड में बहुत सारे स्कूल के बच्चे खड़े होकर पी_टी करते हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ी सी शादी का--

आजू बाजू में बड़े-बड़े पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं।

फोटो पर एक बड़ी सी नदी नजर आ रही है।

एक डांस स्टूडियो नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है।